देखिये यहाँ पे भी सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो पेंटिंग का और डिजाइनिंग का काम सीख कर बना रहे हैं।

इ भी देखिए एक नृत्य है डांस है।

ये क्या हो रहा हैसिकी इस उसी की तरफ लेडीज जोकि एक साइड देख रही है। छोटा बच्चा है वो भी देख रहा है। बहोत सारे लोग है। माथे पर पगड़ी भी बंधी हुई है ब्लू -ब्लू कलर की।

देखिये ये बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे है और अपार्टमेंट टाइप का लग रहा है| देखिये इसके नीचे बहुत सारी कार भी लगी हुई हैं | इसका कलर देखिये व्हाइट भी है और येल्लो भी है।

यह बहुत ऊंची मंजली इमारत है | जो देखिए बिल्डिंग के टाइप की बनी हर एक पे फ्लोर फ्लोर दिख रहा है | देखिए बिल्डिंग का कलर जो है वाइट है और ब्लैक और येलो तीनो कलर है | इस साइड भी --

येलो कलर का सिर्फ बनकर पेंट हुआ है। ऊपर का देखिए स्ट्रक्चर आधा बनाकर छोड़ा हुआ है और बनना अभी बाकी रह गया है और देखिये ऊपर।

प्लसटर हो रहा है| प्लास्टर नीचे ढलैया बोलते हैं छत का| देखिये काफी मेहनत से मजदूर काम कर रहे हैं।